और बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं जो नदी के बीच में है।

जिसमें बहोत सारे अलग अलग तरह के छोटे और बड़े ट्रॉफी रखे हुए हैं।

और हमें बहोत सारे शेल्फ नजर आ रहे हैं।

जो लोहे के हैं उसका कलर ऑरेंज है।

जो की बहोत सारे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुवा हैं।

और मुझे बीच में एक फोटो भी टंगा हुआ नजर आ रहा है।

जिसके कलर ग्रीन कलर के है ब्ल्यू कलर के है ऑरेंज और रेड कलर के है।

उसके अंदर नीला नीला कुछ दिख रहा है झोपड़ी के बाहर के तरफ--

यहां पर हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

पीछे के तरफ हमें बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

मुझे बहोत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक रोड नजर आ रहा--

एक घर टाइप का कुछ दिख रहा है और पेड़ भी दिख रहे हैं।